राष्ट्रभाषा पब्लिक स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों ने --

यहाँ सामने एक पेड़ भी लगा है।

उसके पीछे बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए है जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।

यहाँ पर खाने-पीने की चीजे रखी हुई है यहां पर हर चीज बहुत ही अच्छी लग रही है।

कुर्सियाँ पर लोग बैठ कर अख़बार पढ़ रहे हैं।